एक पोल दिख रहा है पोल पे बहुत तार दिख रहा है।

पेट्रोल पंप पे एक गाड़ी लगा है सभी लोग तेल ले रहा है।

ईसा मसीह की मूर्ति दिख रही है।

सभी लोग योगा कर रहे हैं।

एक लड़का लाल टी_शर्ट पहना है।

एक मकान बन रहा है दीवार प्लास्टर दिख रहा--

इस तस्वीर में एक गार्डन दिख रहा है।

भगवान बुद्ध की मूर्ति दिख रही है एक लड़का खड़ा दिख रहा है।

एक पेड़ सूखा दिख रहा है।

सभी ढोल बजा रहे हैं आसमान सफेद दिख रहा है।

इस तस्वीर में काफी हरा भरा दिख रहा है।

एक कुर्सी दिख रहा है ऊपर पंखा टंगा है लाइट जल रहा है नीचे हरा घास दिख रहा है।

बाहर खिड़की दिख रहा है बड़ा गेट दिख रहा है।

ये तस्वीर में एक बड़ा हॉल दिख रहा है एक आदमी दिख रहा है बहुत कुर्सी दिख रहा है।